और कुछ आदमी भी दिख रहे हैं।

पर कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

और यहां पर कुछ आदमी भी हैं।

यह एक रूम है और यहां पर कुछ आदमी भी है।

यहां पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी है।